यह देखिये यहाँ पर एक सेंटर है इसका नाम है पायोनियर कोचिंग सेंटर यहाँ पर एसएससी युपी पुलिस लेखपाल --

देखिये यहाँ एक क यहाँ पीपल का वृक्ष ल-लगा हुआ है और यह वृक्ष काफी साल पुराना है देखिएगा कितना घना भी हो चूका है और इसकी छाल से पता पड़ रहा है कि ये काफी पुराना हो चूका है।